इस चित्र में बहोत सारी साड़ियां दिखाई दे रही हैं मुझे।

यह पौधे बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा हैं और इस चित्र में एक बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा हैं और छोटे मोटे पौधे भी हैं ।